ये बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक । यहाँ एक औरत बैठी है।

सेल्फी ले रहे हैं।

बहोत सारे यहाँ मशीन है जिनका --